यहाँ पर बहुत सारा जंगल दिखाई दे रहा है। जंगल में काफी जाली घासे दिखाई दे रही है। बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे --

बड़ी सी इमारत दिखाई दे रही है काफी सारे पत्थर पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। एक दीवार दिखाई दे रही हैं जिसमे पास बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं वाइट कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है यंहा पर एक बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर पिंक व्हाइट और रेड कलर के फूल दिखाई दे रहे हैं जो काफी सुंदर लग रहे है। यहाँ पर बहोत सारी मिट्टी पड़ी हुई है। यहाँ पर येल्लो कलर के भी फूल दिखाई दे रहे हैं।

जिसमें काफी सारे सरिये लगे हुए दिखाई दे रहे हैं | ये दिवार की बनी हुई है जिसमें सीमेंट नहीं है लगा हुआ |

यहाँ पर एक बड़ा सा पार्क दिखाई दे रहा है पार्क में काफी सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं जो काफी सुंदर लग रहे हैं यहाँ पर कुछ घाँसें भी दिखाई दे रही हैं । यह जगह काफी खूबसूरत है।

यहाँं पर बोहोत सारी इ बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं जो काफी सुंदर लग रही है। बिल्डिंग के सामने एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। काफी सारा सामान पड़ा हुआ दिखाई दे रहा हैं। एक लाइट का खंबा दिखाई दे रहा है।